सामने काफी सारे तार दिख रहे हैं जो ब्लैक कलर में दिख रहा है। आसमान दिख रहा है। ब्लू कलर में कुछ वाइट कलर में दिख रहा है और यहाँ पर सामने कुछ सीढ़ीयाँ दिख रही हैं चढ़ने के लिए आसपास में।

खंडर दिख रहा कुछ ईटें दिख रही हैं काफी पुरानी पुरानी दिख रही हैं ऊपर यहाँ पर कुछ मिट्टी दिख रही है और काफी सारा पत्थर भी दिख रहे हैं यहाँ पर आसमान दिख रहा है ब्लू कलर में और कुछ काफी पुराने छोटी छोटी बिल्डिंगे दिख रही हैं टूटी फुटी बिल्डिंगे दिख रही हैं।

गेट दिख रहा है गेट का कलर ब्लैक कलर दिख रहा है काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ हरे कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे एक गुफा दिख रही है गुफा जैसा दिख रहा है।

छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ हरे कलर के दिख रहे हैं और यहाँ पर आसपास में कुछ पेड़ दिख रहे हैं पेड़ वो भी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर का दिख रहा है और कुछ वाईट कलर के बादल दिख रहे हैं सामने काफी सारी जगह रखी है सामने एक बड़ा-सा गेट है गेट ब्लैक --

बिल्डिंग का कलर ओरेंज कलर दिख रहा है काफी सारी उसमें से विंडोस दिख रही हैं और आसपास में भी काफी सारी बिल्डिंगे दिख रही हैं बिल्डिंग का पेंटिंग वाईट कलर दिख रहा है एक बिलिंग के पास में जो कि एक खंभा है खंभा बिजली का खंभा है काफी सारे तार हैं उसके अंदर जो ब्लेक कलर के दिख रहे हैं कुछ गाड़िया जाती दिख --

बिलिंग बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है रेड और यल्लो कलर का दिख रहा है कुछ विंडोस दिख रहे हैं और यहाँ खुच पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे एक मेप रखा हुआ दिख रहा है और आसपास में कुछ जाली दिख रही है सीढ़ियां दिख रही हैं चड़ने के लिए।

दिख रहे हैं यहां पे एक चेयर रखा हुआ दिख रहा है रेड कलर का और ब्लाक कलर का दिख रहा है और दीवार की पेंटिंग का कलर वाईट कलर दिख रहा है और कुछ तार भी दिख रहे हैं जो ब्लेक कलर के दिख रहे हैं और विंडोस --

दिख रही है जो की ओरेंज कलर की दिख रही है और आसपास में कुछ बिल्डिंगे दिख रही है बिल्डिंग का पेंटिंग कलर पिंक कलर दिख रहा है और कुछ बिल्डिंग का पेंटिंग कलर फिरोजी कलर दिख रहा है और आसपास में --

वो पास में एक शॉप दिख रहा है शॉप का जो शटर है वो येलो कलर का दिख रहा है ब्लू कलर का दिख रहा है पोस्टर दिख रहा है लगा हुआ है और यहाँ पर कोई परसन दिख रहा है जो ठेला लगा कर खड़ा है।

और ये बिलिंग भी दिख रही है पास में और खाफी जगह में फैली हुई दिख रही है वो बिलिंगे भी वाईट कलर में दिख रही।